टीचर भी खड़े हैं।

टेबल पर सब रखे हैं।

गेट हैं। विंडो हैं। जीना दिखाए रौ । ऊपर डिजाईन है।

खिले हैं फूल। बलफ भी लगो केबल में।

बस के सामने एक आदमी खड़ो है। खाली ड्रम पड़ो है।

जे रमा नर्सिंग होम है। डॉक्टर बी.आर. गुप्ता --

ब्रेंचे हैं। मसाले की ईंट को रोड बिछो है।

बड़ी वारी लाईटें लगी हैं। मर्करी लाइटें सेट हैं।

लैट लगी है।

खरीदन वारे लै रहे हैं। मछली पकड़ के में रख रहे हैं।

यहाँ स्कूल है कोई।

बलफ लगे हैं। झूमर लगे हैं।

रॉडें लगी हैं। लाइट है बढियां।

परसाद चढ़ाए रहे है। मूरतें हैं तीन।

केक हैं बहोत सारे। काउंटर पर रखे हैं।